यह एक कोचिंग सेंटर है। यहाँ इंग्लिश ग्रम्मेर का कोचिंग होता है। यहां बच्चे कोचिंग करने आते है। इंग्लिश --

यह एक पहाड़ी इलाका है इस इलाके में छोटे से जंगल भी है जहाँ एक आदमी परेशान सा दिख रहा है वह --

जिसमें काफी भीड़ लग हुआ है। कुछ ओ लेडिस नृत्य कर रही है और जेन्ट्स भी नृत्य कर रहे है।

लगाए गए हैं बहुत सारा कटिंग पत्थर यहाँ लगाया गया है और --

एक सोफ़ा रखा हुआ है इस सोफ़े में --

यह एक बाजार है बाजार में फोर लाइन रोड दिखाई देते है।

जिसमें ऊपर से जाली लगा हुआ है। उस जाली पर खड़े हुए एक आदमी फ़ोटो खिंचवा रहे है व देखने में --

अगल-बगल काफी हरे-भरे दिखते है यह बहुत अच्छा दिखाता है यह पहाड़ से --

अशोक नगर भवन जमोई के नाम का बोर्ड लगा हुआ है यह भवन बहुत ही बड़े और अच्छी दिखते है इस भवन मे बहुत सारे आदमी।

ऊंचा है तमंदीप दिखने मे बहुत अच्छे लगते है यहाँ काफी भीड़ लगी हुई है। यह मंदिर मे पूजा करने के लिए दूर-दूर से आदमी आते--

यह एक बाजार है इस बाजार मे एक मंदिर है जो चारों तरफ काफी --